वाटर पार्क है यहाँ पे दो लोग स्विम कर रहे हैं एक आदमी खड़ा है वहाँ पे साइड में झुला वगेरा भी लगा हुआ है एक पूल सा जैसा बना हुआ है ।

पीले कलर का एक खम्बा है यहाँ पर ब्लू कलर से बॉर्डरिंग किया गया है झुला को।

यहाँ पे घर बन रहे है घर के एक पीछे में बिल्डिंग है दो-तीन बिल्डिंग्स हैं जो अभी ईटे का है और जो न्यू बिल्डिंग बनी है अभी पेंट वैगरह नहीं की गई है उसमें छः खिड़कियाँ हैं साइड में एक छोटा-सा मैदान है मैदान के बाद गिट्टी वगेरा लगी गिरे हुए हैं।

दो लेडीज खड़ी हैं जो जिन्होंने ब्लू साड़ी पहने है सामने में एक ब्लू कलर का गि ग्रिल है साइड में दो तीन खिड़कियाँ लगी हुई हैं।

डांस क्लास है जिसमें दो ज बहुत बच्चे डांस का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पीछे में ए.सी. भी लगा हुआ है दो खिड़कियाँ हैं एक ब्लैक कलर का पर्दा डे ए लगा हुआ है पीछे दीवार पर डी.एन. लिखा हुआ है।

बड़ा सा मैदान है मैदान में दो ट्रेक्टर है जे.सी.बी. लगे हुए हैं बीच में एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है जो तीन कलर का ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कलर का झंडा है और छतरी जैसा बना हुआ है उसमें वेटिंग चेयर वगेरह लगे हुए हैं ।